पीछे बड़ा सा गेट भी है।

ऊपर बोर्ड में शाम सुपर मार्केट भी लिखा हुआ है।

दूसरे तरफ कंटेनर भी है।

टेबल के ऊपर पानी बोतल और टिशू पेपर भी है।

बड़ा सा रैक भी है।

ऊपर पत्ता से बना हुआ है।

अंदर चेयर और टेबल भी है।

सामने एक बड़ा सा लाल कलर ट्रक भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा फैक्ट्री दिखाई दे रहा है।

पीछे सफेद कलर का गाड़ी भी--

लीची को एक बड़ा से लोहे प्लेट में रखा हुआ है।

एक बूढ़ा का शक्ल को ब्लर किया गया है।

यह माला को तरह तरह के आर्टिफिशियल फूल से बनाया गया है।

ऊपर में डीजल भी लिखा हुआ है।

दोनों का फेस ब्लर किया गया है।

तरह तरह की कुर्सियां भी है।

और बहुत सारे मछली और चिकन की दुकान भी है।

मंदिर के आगे बहुत सारे मनुष्य भी है।